पीएचपी कुकीज़ के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
कुकीज़ एक महत्वपूर्ण भाग है जब आपको विशेष वेबसाइट बनानी होती है जहाँ आप उपयोगकर्ता के बारे में जानकारी संचित करते हैं
कुकी की परिभाषा है कि यह आपके कंप्यूटर पर या उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर वेबसर्वर द्वारा संचित डेटा का एक सेट है
इसका मतलब है जब हम एक वेबसाइट पर जाते हैं हमारी जानकारी संचित होती है और इस्तेमाल होती है जब हम वापस उस वेबसाइट पर जाते है लेकिन हाँ हमें remember me ऑप्शन का चुनाव करना होगा
अतः आपको हर बार लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है
लेकिन यदि आपने remember me बटन का चुनाव नहीं किया है आप सेशन्स यानि सत्रों में काम करेंगे जो बंद होंगे जैसे ही आप ब्राउज़र बंद करेंगे
अतः सेशन्स मौजूद नहीं रहते लेकिन हाँ कुकीज़ बाद में उपयोग के लिए संचित रहते हैं
अतः चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कुकी कैसे बनाएँ
setcookie फंक्शन का उपयोग करके ऐसा करते हैं
फंक्शन 5 पैरामीटर लेता है लेकिन में सिर्फ 3 का उपयोग करूँगा
पहला महत्वपूर्ण जो मैं उपयोग करूँगा वह है कुकी का नाम जिसे मैं name सेट करूँगा
दूसरा है डेटा जिसे कुकी के भीतर संचित करना है और यहाँ मैं टाइप करूँगा alex
अब अगला थोड़ा और मुश्किल है
यह टाइम है जब उस कुकी की अवधि समाप्त होती है
अब इसे सेकंड्स में सेट करने की आवश्यकता है
और दिखाने के लिए मैं expire के लिए exp नामक वेरिएबल बनाने जा रहा हूँ
मैं यहाँ कुछ वेल्यू जोड़ता हूँ
अभी के लिए मैं शून्य जोड़ रहा हूँ
अतः यदि इसे एको करते हैं और अभी के लिए इस कुकी फंक्शन को हटाते हैं
मैं यहाँ सिर्फ time को एको कर रहा हूँ यह बताने के लिए कि यह क्या करता है
चलिए रिफ्रेश करते हैं आप यहाँ कई अंको को देख सकते हैं
यह एक विशिष्ट timestamp है
और यह विशिष्ट timestamp जनवरी 1st 1970 के पहले के सेकंड्स की संख्या है
अतः 1 जनवरी 12 बजे साल 1970
आप इसे यहाँ देख सकते हैं – यहाँ सेकंड्स की संख्या भविष्य के एक दिनांक के बराबर है
अतः उदाहरण के लिए अभी यह 88 है अब 89 और जैसेजैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ यह हर सेकण्ड के साथ बढ़ता है
तो यह विशिष्ट वेल्यू जोड़ने के लिए एक उपयोगी तरीका है
अब हमें एक दिन में सेकंड्स में टाइम खोजना है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यह कुकी एक दिन में समाप्त हो जाए
अतः दिन में मिनट का पता करने के लिए मैं 60 से 24 गुणा करता हूँ
और एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं उसके लिए उत्तर को 60 से गुणा करते हैं जो है 86400
यदि हम शून्य को 86400 से बदलते हैं हमारे पास expire वेरिएबल है जो कि अभी दिन के द्वारा भविष्य में समय को स्थाई रखता है
समय बचाने के लिए मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ expire वेरिएबल को जोड़ूँगा
अतः यह फंक्शन alex वेल्यू के साथ हमारी name नामक कुकी को सेट करता है और यह एक दिन में समाप्त हो जाती है – यह टाइम फंक्शन का उपयोग कर सेकंड्स में पढ़ी जाती है
इस पेज को रिफ्रेश करते हैं और हम देख सकते हैं कि कोई एरर नहीं है इसका मतलब है कि यह सही है
अब मैं इन सबको कमेन्ट करने के लिए ब्लाक कमेंटिंग का उपयोग करूँगा
और इसके नीचे इस कुकी को एको करते हैं
लेकिन इसको कमेन्ट करने का कारण है कि आपको हर बार कुकी सेट करने की आवश्यकता नहीं जब उपयोगकर्ता पेज पर आता है
यदि आप स्क्रिप्ट में log का उपयोग कर रहे हैं और आप अपने वेबसाइट पर उपयोगकर्ता को login करने की अनुमति देते हैं आपको सिर्फ एक बार इसे लागू करना होगा और फिर कुकी संचित होती है
और इसे इस समय के भीतर इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे हमने यहाँ सेट किया है
अतः मैं एको सेट करता हूँ और डॉलर चिन्ह का उपयोग करूँगा माफ कीजिये अन्डर्स्कोर कुकी
यहाँ भीतर कुकी का नाम है अतः मैं name टाइप करूँगा रिफ्रेश करूँगा और आप alex देख सकते हैं
इसकी जाँच कर सकते हैं यदि मैं ब्राउज़र बंद करता हूँ कंप्यूटर रिस्टार्ट करके फिर से इस पेज पर आता हूँ यह फिर भी alex ही रहेगा क्योंकि यह कंप्यूटर पर संचित हो चुका है
ठीक है यदि मुझे एक और कुकी सेट करनी है मानिए कि age नामक कुकी यहाँ सेट करता हूँ और मेरी उम्र 19 है
और एक्स्पाइरी टाइम को ऐसे ही रखते हैं
इसे यहाँ ऊपर रखते हैं
इसे अच्छे ढंग से दिखने के लिए हम block ब्लाक कमेन्ट को लाइन कमेंट से बदलते हैं
अतः एक्स्पाइरी टाइम के लिए यहाँ एक अलग कुकी सेट करते हैं
और उसकी एक्स्पाइरी टाइम वही होगी चलिए देखते हैं कि हमें सही मिलता है या नहीं
हम इसे हटा देते हैं
हमने समान एक्स्पाइरी टाइम के साथ एक अन्य कुकी सेट की है
रिफ्रेश करते हैंठीक है यह सेट हो चुका है
तो अब इसे कमेन्ट करते हैं और यहाँ इसे एको करते हैं
तो आप एक पेज पर एक से ज्यादा कुकी सेट कर सकते हैं इसे रिफ्रेश करते हैं और हमें 19 मिलता है
हम एक वाक्य में भी कुकी सेट कर सकते हैं
इसके लिए मैं टाइप करूँगा echo underscore cookie name और concatenate है is और फिर age जोडूंगा
अतः हमें संचित कुकी से यह वाक्य मिलेगाalex is 19
और फिर से यदि मैं ब्राउज़र बंद करता हूँ और कंप्यूटर रिस्टार्ट करता हूँ या दो घंटे बाद फिर से आता हूँ तब भी उपयोगकर्ता के इस्तेमाल के लिए यह जानकारी इस कंप्यूटर पर संचित होगी
अतः आप देख सकते हैं कि वे इस्तेमाल के लिए काफी उपयोगी हैं और बनाने के लिए तथा उपयोगकर्ता को एको करने के लिए आसान भी हैं
print r या print underscore r नामक फंक्शन हैं जिनका उपयोग हम कर सकते हैं
और हम यहाँ dollar underscore cookie एको करते हैं हम इसे बाद में अलाइन करेंगे
इसे रिफ्रेश करें और आप देख सकते हैं कि यहाँ एक अरै है और एक अलग वेल्यू मिली है
हमारे पास name है जोकि alex है और age है जोकि 19 है
अतः यह कुकीज़ है और इन्हें सेट किया गया है और यह कुकीज़ की वेल्यू है
यह काफी उपयोगी है यदि आपको इसे एको करना है
अच्छा तो एक अन्य फंक्शन है जिसे मैं इस ट्यूटोरियल के दूसरे भाग में बताऊंगा और एक कुकी सेट की है या नहीं इसका पता करने के लिए मैं एक if स्टेटमेंट का उपयोग करूँगा
और मैं दिखाऊंगा कि कुकी को अनसेट कैसे करें
अतः हमसे दूसरे भाग में मिलिए यह स्क्रिप्ट सकीना शेख द्वारा अनुवादित है तथा आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार आपसे विदा लेता हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद